यहां पर एक मैरिज गार्डन दिखाई दे रहा है मैरिज गार्डन काफी सजा हुआ दिखाई दे रहा है।

सामने की तरफ एक बस खड़ी हुई दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद है जिसमें आगे दो कांच लगे हुए हैं और एक बड़ा सा काला कलर का कांच भी दिखाई दे रहा है।

यहाँ पर एक सुंदर सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है जो काफी डिजाइनर बनी हुई है उसमें काफी सारे कलर दिखाई दे रहे हैं ऑरेंज कलर दिखाई दे रहा है।

यहां पर एक बैंक दिखाई दे रही है जिसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है बोर्ड लाल रंग का दिखाई दे रहा है जिस पर एक्सिस बैंक लिखा हुआ है।

यहां पर एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है बिल्डिंग पे नीला बोर्ड लगा हुआ है जिस पर पॉलिटेक्निक कॉलेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

घास का कलर हरा दिखाई दे रहा है आसपास फूल दिखाई दे रहे हैं एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसका रंग सफेद है और एक उसपर डिजाइन बनी हुई दिखाई दे रही है।